यह एक मस्जिद है जोकि मुस्लिम जाति के भगवानों का मंदिर हैं।

यह हिंदुओं के भगवान श्री कृष्णा है यह भगवान हिंदुओं के धर्म मे बहुत ही ज़्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं।

यहाँ मे ऊपर से लोग इस टनल के अंदर से बाहर आते है और मानोनंजन करते है।

एह चंद्रशेखर आजाद स्मारक है यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा रखी गयी है चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर बिराजे हुए हैं।

यह एक साइकिल की दुकान है इसका नाम न्यू वर्मा साइकिल स्टोर है यह रेहरा बाजार मे है बलरामपुर--

यह एक शादी इवेंट है यहाँ पर शादी की तैयारियां चल रही है मेहमानों को लिए टेबल बेंचे लगाई गई है यहाँ पर एक शादी होने वाली है।

यहाँ पर एक स्टेचू बनाया गया है जिनका नाम गॉड बुद्धा है।